ऊपर के छत पे बड़े बड़े अक्षरों में राजकीय आंबेडकर--

चमेली के फूलों से बनाया गया है और बीच बीच में इसमें गुलाब के फूल लगाए गए हैं।

बगल में छोटे छोटे टेप रखे दिखाई दे रहे हैं।